और यहाँ बहुत सारे सामान फैले हुए दिखाई दे रहे है। टायर नजर आ रहे है और गाडी खुली हुई--

यहाँ बहुत धुप गाडीया खडी दिखाई हुई दे रही है पेढ पौधे नजर आ रहे है और बहुत सारे देख रहे है।

झंडे लगे हुए दिखाई दे रहे है।

मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है और दुकान के अंदर कुछ व्यक्ती दिखाई दे रहे है। और--

दिखाई दे रहे है यहा दो व्यक्ती दिखाई दे रहे है कुछ बाहर नजर आ--

और उसी पेड पौधों के बीच मे एक मकान छोटा बना हुआ दिखाई व्हाईट कलर का मकान बना हुआ दिखाई दे रहा है एक सीडी दिखाई--

एक ट्रेन कि पटरी मे एक मालगाडी दिखाई दे रही है।

और कुछ चेअर नजर आ रही है और यहा कूछ व्यक्ती दिखाई दे रहे है। एक व्यक्ती का चेहरा स्पष्ट नही दिखाई दे रहा है।

यहाँ मुझे बहुत सारी बाईक रखी हुई दिखाई दे रही है और बहुत सारी बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है और बडी-बडी दुकाने भी दिखाई दे रही है।

नृत्य करते हुए लडकिया दिखाई दे रही है और वो कत्थक डान्स करते हुये दिखाई दे रही है स्टेज पे और यहाँ कालीन बिछी हुई दिखाई दे रही है और कुछ सामान रखे हुये दिखाई दे रहे है यहा पे।

भगवान कि बहुत अच्छी प्रतिमा दिखाई दें रही है और प्रतिमा का मे के नीचे बैठे हुए बहोत से व्यक्ती दिखाई दे पूजा करते हुए नजर आ रहे है।

बहुत सारी लेटीज दिखाई रही है और हात मे कुछ पूजन का सामन ले रही है और वो कुछ पूजन का सामान ली है और बहुत बडा तलाब दिखाई दे रहा है और पूजन करते हुये नजर आ रही है।

दिखाई दे रहा है। वो जिम करता हुआ नजर आ रहा है और एक व्यक्ति और दिखाई दे रहा है और यहाँ बहुत सारे--

और एक व्यक्ति खडे है।